ऑफिस में भगवान की तस्वीरें भी लगी हुई है।

दिखाया गया है कि होटल में एक टेबल पर एक प्लेट में खाना परोसा गया है।

और एक गिलास भी है साथ में कुछ कटोरी भी रखा गया है।

नॉन ए_सी रूम होटल बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।

एक आदमी नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है।

यह रात का सीन दिखाया गया है।

स्मार्ट बाजार में गेट में लाल रंग का है।

मंदीर की दीवार में एक बैनर भी लगाया गया है।

यह एक होटल है।

होटल के रूम एक बड़ा लाइट भी लगी हुई है।

बच्चा का बाजा मिल रहा है तरह-तरह के मुकुट मिल रहा है।

भी खूबसूरत नजर आ रहा है।

मे एक आदमी जिम करते हुए नजर आ रहे हैं।

महिलाएं अपने अपने बैठने के लिए अपना अपने कपड़ा साथ लाई है।

यह एक दुकान नजर आ रहा है।

का नाम है ओप्पो मोबाइल इसमें मोबाइल के अलावा और बहुत सारा सामान मिलता है।

यह एक मंदिर का दृश्य है मंदिर बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ रहा है।

मंदिर के ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

लड़की हाथ जोड़ कर वेलकम किया हुआ नजर आ रहा हैं।

यह एक रेस्टोरेंट हैं।

ऑफिस में बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।

पहाड़ के नीचे बहुत बड़ा हाल नजर आ रहा है।

गुफा के बाहर कुछ व्यक्ति खड़े दिखाई पड़ रहे है।

यह एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई पड़ रहा है।

इसमें लिखा हुआ अल्ट्राटेच । यह सीमेंट की बोरी नजर आ रही है।

रा मूर्तियां हाथों में कुछ न कुछ वाद यंत्र रखा हुआ हैं।

ये बहुत ही तरह तरह के हैं।

आलू प्याज टमाटर केला भी दिख रहा है।

लोग इस पानी से पूजा भी करते हैं।

गंगा में बहुत से आदमी नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

गंगा में एक महावीर जी का तस्वीर भी रखा हुआ है।

जंगल में बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

प्लेट में रोटी और चटनी नजर आ रही है।

नदी में पानी बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं।

इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पोस्टर भी लगाया गया है।